जोकि बहुत बढ़िया लग रहा है हमको आपको बढ़िया लगे तो बतायेगा --

जोकि बोहोत बढ़ियां ये करत करते हैं और करतब तो मान लीजिये बोहोत बढ़ियां --

सब कोई मतलब डांस -उन्स कर रहा है और फोटो बोहोत बढ़िया हैं।